चित्र के अंदर हमें एक घासें दिखाई दे रही हैं और एक कुछ डब्बे में कुछ पड़ा हुआ जो दिख रहा है।

सामने एक गेट जैसा भी दिख रहा है आस-पास लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।

चित्र के अंदर हमें एक बड़ा सारा पेड़ खेत के अंदर दिखाया जिसकी लटे बोहत हरे-हरे पत्तियां लटक रही हैं।

चित्र के अंदर यहां का व्यू (view) किसी जिम का दिखाई दे रहा है जहां पर बोहोत सारी दौड़ लगाने वाली मशीने दिख रही है जो काले रंग की दिखाई दे रही हैं।

चित्र के अंदर किसी टेबल पे कुछ लोहे के बना वस्तु रखी हुई जो काफी लंबी है। उसके पीछे का बेगराउंड बड़ा खूबसूरत दिख रहा है जो डिज़ाइन करा हुआ है।

यहाँ पर एक बेड जो सफेद रंग का दिख रहा है उसकी चादर लाल सफेद है और उस के ऊपर कंबल लाल दिख रहा है। तकिये का रंग सफेद और काला है और कुछ सर्किट भी दिख रहा है बिजली का।

चित्र के अंदर जहां कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे जहां पर एक व्यक्ति ने सफेद नीली और एक लेडीज़ हाथ में पीला कुछ सामान लिए खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पीछे पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है। उसकी छत का रंग सफेद और लाइट चमक रही है। उसकी टेबल पे कुछ कंप्युटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुर्सियाँ जो काले रंग की दिखाई दे रही है।

केरट पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फल फ्रूट पीले रंग के बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं।

लाल सफ़ेद रंग हैं उसकी हाइट लाइट का का रंग लाल कांच काल दिखाई दे रहा हैंऔर उसके पास मैं एक पीले रंग का घर दिखाई दे रहा है पेड़ दिख रहा है सफ़ेद रंग का बादल भी दिख रहा है।